यह दृश्य किसी पार्क का नजर आ रहा है जिसके सामने एक बड़ा सा फव्वारा लगा हुआ दिखाई दे रहा है।

यह दृश्य एक पोस्टर का है जो सामने की ओर लगा हुआ दिखाई दे--

तथा बगल में एक व्यक्ति है जिसके हाथ में मोबाइल दिखाई दे रहा है।

इसमें सामने की ओर एक लाइट लगी हुई दिखाई दे रही है।

सामने एक बिल्डिंग दिखाई दे रही है तथा पीछे की ओर बहोत सारे पेड़ नजर आ रहे हैं।

तथा अह अगल बगल में कई सारे बिल्डिंग और नजर आ रहे हैं।